ये व्यक्तिन सफ़ेद इनर और एक लोवर पहने हुए है और इस पर ए.टी.एम. पर गेट एल्युमीनियम का लगा है और इसके ऊपर --